जो पत्ते लगा रहा है पीछे गुलदस्ते हैं जिनमें फूल लगे हैं ऊपर से टेंट है।

जहां पर तीन कमरे दिख रहे हैं।

यहां बैनर्स लगे हैं यहां पर अंदर कुछ कपड़े हैं कुछ पुतले खड़े किए गए हैं जिनमें पहाड़ी पोशाके पहनी है।

यह एक शॉप है शॉप में कुछ बैनरस है।

यहाँ पर एक लैपटॉप है लैपटॉप के पास कैलकुलेटर है।

यह एक बिल्डिंग है यह लाल रंग की है इसमें कई बालकनियाँ हैं।

यह कार वाशिंग सेंटर है यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि गाड़ी को धो रहे हैं।

पीछे एक टीन से चार बैनर लगे हैं जो कि नीले कलर के हैं।

फोन कवर रंगबिरंगे है जो की सफेद कलर के पैकेट में है।

दो डंडियाँ सामने से काली दिख रही है।

यहाँ एक रूम है रूम में एक बेड लगा है जो कि काले रंग का है।

पीछे सुनहरे कलर की दीवार है सामने कुछ फूल दिख रहे हैं जो कि सफेद कलर के हैं हरी पत्तियाँ दिख रही है।

एक बिल्डिंग दिख रही है नीचे ब्राउन कलर की मिट्टी है।

एक आदमी बीच रोड से चल रहा है नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंग्स भी है जिनकी चादरें लाल रंग की हैं।

ऊपर सफेद आसमान है पीछे हरे रंग की झाड़ियां दिख रही है कुछ मर्द भी नीचे बैठे हैं।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा है इसके साइड में एक बच्ची है।

पीछे कुछ दीवारें हैं दीवारों का कलर लाल और येलो है।

इसने वाइट कलर की शर्ट पहनी है।

ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है इसने गले में हेडफोन है।

ये लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं।

कुछ पत्थर के ऊपर खड़े हैं हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं पत्थर का कलर ब्लैक दिख रहा है।

एक इंसान में नीले कलर की शर्ट पहनी है।

कुछ रैक्स बनी है जिसमें कुछ बॉटल्स रखी है।

यह एक कमरा है कमरे की दीवारें लगी हैं दीवारों में कुछ तस्वीरें टंगी है।

इन मशीनों की संख्या तीन से चार है।

यह एक शॉप है यहाँ पर कई रंग की रेक्स है रेक्स के साइड में दो बोतल्स है।

एक टेबल रखा है टेबल के ऊपर ग्लास है।

यह एक गार्डन है गार्डन में कई लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी चटाइयाँ बिछाई है ये ताड़ासन कर रहे हैं।

साइड में कुछ हरी भरी पत्तियाँ हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का रोड है नीला आसमान है।

यहाँ पर एक बेड बॉक्स है जिसके ऊपर दो तकियाँ हैं।

यहां पर एक नीले रंग की बस है बस के पीछे लाल रंग की बिल्डिंग है एक कार चल रही है साइड में कुछ बैनर लगे हैं।

इन्होंने लाल रंग की शर्ट पहनी है एक ने लाल रंग का सूट पहना है।